इस फोटो में एक स्टैंडर्ड वाइन शॉप दिखाई दे रही है।

पोस्टर पर इनडोर एक्टिंग स्कूल लिखा हुआ है।

इस फोटो में चार लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में तीन बस दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में एक फोटोग्राफर भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट का नाम हांडी रेस्टोरेंट है।

ब्रिज बना हुआ है इस फोटो में एक टावर दिखाई--